यहां पे एक आदमी मिर्ची साफ कर रहा है।

साइड में एक ब्लू कलर का बॉक्स पड़ा है।

ये एक कटलरी की शॉप है।

उसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू ब्लैक कलर की जीन--

जहां पे एक क्रिसमस ट्री टंगी रखी हुई है।

जहां पे बहोत सारे नेकलेस डिस्प्ले में लगे हुए है।

वहीं पे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

उसने ब्लू शर्ट और ग्रीन लोवर पहेना हुआ--

ये एक दुकान दिख रही है।

पालकी पे दो आदमी लटके हुए हैं।

व्हाइट रेड और ब्लैक कलर के बलून से सजया गया--

हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग दिख रहें--

यहां पे एक रोड दिख रा--

ट्रक के वहां एक ब्लैक कलर की बड़ी पानी की टंकी है ऊपर लिखा है लुब्रिकेंट ।

वही पार्लर में एक आदमी कटिंग कर रहा--

दुकान का गेट ब्राउन कलर का है।

वहीं केबिन में एक आदमी खड़ा हुआ है।

जिम में बहुत सारी मशनरीज रखी हुई हैं और वहीं पे --

मशीन सर्विसिंग की दुकान दिख रही हैं।